मै यहाँ देख पा रही हूँ एक पेट्रोल पंप है उसका रंग सफ़ेद और गेट का रंग काला है और उसके सामने ही एक गाडी खड़ी हुई है और उसके थोडा आगे ही --

गाय के सामने एक टोकरी है उसमे भूसा है गाय के बाजू एक दीवार है उसका रंग सफ़ेद है नीचे मट्टी मट्टी दिख रहा है।

मै यहाँ देख पा रही हु एक बस स्टॉप है वहा एक बस खड़ा हुआ है उसका रंग नीला है एक आदमी बस में बैग फेक रहा है।

उनमे से तीन ओरत एक आदमी है आदमी ने नीले रंग का कुड़ता पहना हुआ है और तीनो ओरत--

मै यहाँ पे देख पा रही हूँ की एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है उसके सामने एक बड़ा सा बंगला दिखाई दे रहा है।

और एक बंगला है बंगले के पास भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है दुकान के पास दो खंबे है।

मै यहाँ देख पा रही हूँ पत्थरों से बना एक पुराना मंदिर है मंदिर के पास कुछ तीन लोग खड़े हुए है और सिडीयों के पास चार लोग बैठे हुए है।

फल के सब्जी के बंडी लगाए हुए ठहरे है सामने बड़े बड़े बैनर लगे हुए है।